ये तो लोहा के गेट है। ये तो यहाँ पर भी गाँव में भी लोग लगाते है। बहोत कम लोग ही लगाते है अपने मैन गेट पे ।

ये बस स्टैन्ड है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बस स्टैन्ड हम लोगों के यहाँ तो इतना साफ-उफ रहता नहीं है तो कहीं लग रहा है बाहर का स्टैन्ड है अच्छा भी लग रहा है|

ये तो फोटो से क्लियर पता नहीं चल रहा है की कहां है लेकिन इतना पता चल रहा है की रोड है और लड़का लोग पार कर रहा है उधर कोई करखाना टाइप के है।

फोटो मे ही देखे है और मो दादी लोग से सुने है।